सब्जी मंडी में बहोत सारे व्यक्ति सब्जी बेच रहे --

हैं और कुछ व्यक्ति सब्जी के साथ घूम रहे है और दुकानों में मंडी के सामने गाड़ियाँ रखी हुई --

ईरन मैदान के अंदर कुछ घास खा रहा है।

अलग-अलग पेड़ अलग-अलग फल दे --

महिलायें और व्यक्ति स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहे हैं और पानी भी चारों तरफ से हल रहा है और स्विमिंग पूल के बाहर लम्बे लम्बे पेड़ खड़े हुए --

और कुछ व्यक्ति और महिलायें खड़े हुए हैं और एक महिला झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रही है और चारों तरफ देखती अलग-अलग दिशा में बैठे हुए हैं।

बस स्टैंड पर बसे खड़ी हुई हैं और कुछ व्यक्ति बसों की सफाई कर रहे हैं और वहां एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

एक शोरूम के अंदर चारों तरफ टाइल्सें लगी हुई हैं और एल.सी.डी. टी.वी. लगी हुई है जो चल रही है।

उनके अंदर एक पुराना पंखा लगा हुआ है और चारो तरफ द्वार ही द्वार हैं और उसके अंदर पिल्लरों पर संगमरमर के पत्थर लगे --